यहाँ पर एक घर बना हुआ हेगा और नीचे ऑफिस बना हुआ है ऊपर घर है ऑफिस में ऊपर एक अ बैनर लगा हुआ हेगा| ऑफिस के बाहर काफी भीड़ है बहुत सारे लोग हैं |

यह एक डांस क्लास होगी। यहाँ पर छोटे बच्चों को डांस सिखाया जाता है। यहां पर एक टीचर होंगे जो डांस सिखा रहे हैं बच्चों को और बच्चे डांस सीख रहें हैं। कमरे मे एक मिरर लगा हुआ होगा काफी बड़ा सा।

यहाँ पर बच्चों के लिए छोटी- छोटी सी वाटर स्लाइड बनी हुई हेंगी जो बहोत छोटी हेंगी और बड़ों के लिए काफ़ी बड़ी वाटर स्लाइडें भी बनी हुई हेेंगी और यहां पूरी सेफ्टी भी है।

यहाँ पर एक चर्च हैगा और ये चर्च बहोत बड़ा हैगा और इसमें काफी कलर का पेंट किया गया है। चर्च के ऊपर क्रिस्टीयन का सिंबल बना हुआ हैगा और चर्च में डेकोरेशन की गयी है। चर्च के बाहर --